ट्रेन बहुत अच्छा है क्योंकि सभी लोग सफर करते हैं कहीं प जाने के लिए बहुत अच्छा सुविधा है।

यहाँ पे बेंच है बहोत से दो तीन ठो बेंच है बेंच का कलर --

ये साड़ी का कलर है गोल्डन कलर है एक लड़की कागज पकड़ी हुई है ।

सोफा काला कलर में है और लाइट भी लगा हुआ है इधर-उधर बहुत अच्छा है पंका वगैरह है सफेद कलर में --

पहाड़ी है पहाड़ी से पानी आ रहा है झरना है।

गार्डन है छीन का छाड़ है और बहुत सारा छूला हुआ है।

और पोटरी भी है और हरा-भरा झाड़ है गार्डन है गार्डन टाइप में सजा हुआ है।

ब्रिंच स्कूल के बरांदा है।

अ हरा हरा है वाइट कलर के कपड़ा पहने हैं।

और आसमान की भी चमक बहुत अच्छा है।

बिजली खम है इधर-उधर गए हैं।